हमको एक टेंपल दिखाई दे रहा है टेंपल का अंदर बुद्धा स्टैचू दिखाई दे रहा है।

टेबल का ऊपर टिशु स्टैंड रखा हुआ है।

हमको यहां में एक थाली दिखाई दे रहा है।

थाली का रंग काला है।

यहां में हमको बहोत सारा विंडो भी नजर आ रहा है।

नदी का किनारे बहुत सारा जंगल है।

दुकान में बहुत सारा मिठाई रखा हुआ है।

यहां में मुझे दो लाइट भी नजर आ रहा है।

यहां में एक फैन भी टंगाया हुआ है।

इस पिक्चर में हमको बहुत बड़ा पानी दिखाई दे रहा है। हमको दूर में पहाड़ भी नजर आ रहा है।

मुझे यहां में पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

हमको यहां में एक ग्रीन कलर का बोतल भी नजर आ रहा है।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

एक आदमी ने ब्लू रंग का तोपी पहना हुआ है।

ये घर एक तोकु पत्ता से बनाया गया है।

यहां मे बहुत ज्यादा खिड़की भी नजर आ रहा है।

हमको यहां में एक बड़ा सा पानी भी नजर आ रहा है।

हमको यहां में जंगल सब भी दिखाई दे रहा है।

वो आदमी का हाथ में वॉच भी दिखाई दे रहा है।

दरवाजा में वेलकम टू बाल दारी लिखा हुआ है।

अंदर में एक टेलर मशीन रखा हुआ है।

ये टेलर का काउंटर प्लाई और शीशा से बनाया हुआ है।

यहां बहुत सारा मूर्तियां है।

एक टेबल का पीछे छोटा सा डस्टबिन रखा हुआ है।

जंगल का बीच बहोत सारा टेंट लगाया हुआ है।